यहां पे तीन स्टील का--

यहां पे एक पेट्रोल पंप है एच_पी का व एक दो तीन चार खंबे लगे हुए है व पेट्रोल पंप का--

जहां पे एक ईले कलर का टेबल व एक--

प्रकार का ससकी है या प्राइवेट संस्था लग रहा है जहां पे किसी भी बाहर के आदमी का आवागम बंद है धन्यवाद।

पालन किया जा रहा है वा यहां पे नमस्ते इंडिया करके लिखा हुआ है वह एक बाइक खड़ा हुआ है यहां पे सभी लोग__

शानदार ये बन रहा हैं जिससे लोग बहोत ही अच्छे महसूस करते है धन्यवाद।

चिड़िया है वहां सामने की ओर एक अच्छा सा लोकेशन दिख रहा है जहां पे लोग समय व्यतीत कर सकते हैं।

यहाँ एक एच_पी का पेट्रोल पंप है जहाँ पे एक व दो तीन चार पांच --

पे दीवाल है वह यहां पे बहोत सारे--

यह एक देखने में कार गैरेज लग रहा है जहां पे--

व उनके निजी जीवन या फिर कब समय के लिए एक कंप्यूटर डेस्क को बनाया गया है।

फ्रिज का उपयोग भी किया जा रहा है।

मॉल को अपने--